एक्टिवा बाइक और वगैरा --

यह एक डेरी फार्म की फोटो है। इस डेरी फार्म का नाम बस्तर डेरी फार्म है। यहाँ पे --

यहाँ पे पार्किंग की फोटो दिखाई गई है जहाँ पे श्वेत रंग की गाड़िया खड़ी है।

तरह तरह की एक्सरसाइज करने के लिए उसके इक्विपमेंट खरीदेने के लिए यहां पर आते रहते हैं।

चीजे रखी गई है। जहाँ से लोग ग्रोसरी की खरीदी करते है।

यह कोई मंदिर का फोटो है। ये मंदिर की तरफ जाता हुआ राश्ता है जहाँ पे दो लोग पैदल --

यह किसी होटल या किसी बड़े --

यह किसी पुराने या ऐतिहासिक मंदिर का फोटो है।

यह फोटो किसी गांव का लग रहा है जहाँ पे कोई टीचर --

यह किसी के घर की फोटो --

यह किसी बहोत बड़े उद्यान का फोटो लग रहा है।